ये किसी जिम की फोटो है यहां पे पीछे की ओर दो --

यहां पे बहोत सारे न्यूज़ पेपर भी बिछे हुए नजर आ रहे हैं मैदान में कुछ लोग --

यह किसी ज्वेलरी शॉप के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है।

और दूर से पहाड़ का नजारा भी नजर आ रहा है।

ये किसी हाल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे टेबलों के अलग अलग कंपार्टमेंट --

जूते चप्पलों की बड़ी सी दुकाने बनी हुई दिखाई दे रही है पास ही में एक --

जहां पे एक कांच की शोकेस में बहोत ही यूनिक यूनिक चीजे लगी हुई नजर आ रही है।

ये एक ए_टी_एम के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जोकि इंडियन पोस्ट का है।

और सामने वॉल पे एक खूबसूरत डिजाईन भी बना हुआ नजर आ रहा है।

खिड़की की फोटो दिखाई देर ही है।

जहां पे कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल का मैच खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने कि ओर दो टीचर्स खड़े हुए हैं जो उन्हें पी टी करवाते हुए नजर आ रहे हैं।